देख कर लग रहा है की ये एक मंदिर है इस मंदिर में राम जी और सीता जी एंड लक्ष्मण जी का मूर्ति रखे हुए है इस मंदिर का निचे का टाइल्स वाइट कलर का है इस मंदिर का ऑरेंज एंड ग्रीन एंड वाइट कलर में कलर किया हुआ है इस मंदिर में एक व्यक्ति पूजा कर रहे हैं।

र है की यह फूलो की दुकान है इन फूलो की दुकान में बहुत सारे फूले लगे हुए हैं इसमें से एक कमल फूल लग रहे हैं जो खिले हुए हैं और बहुत सारे फूल रखे हुए हैं इसमें बहुत सारे माले रखे हुए हैं उन मालो का रंग वाइट कलर का है और --

इसमें रंग बिरंगे लड़के एंड लड़कियों कपड़े रखे हुए है।